लाइट्स है ए.सी. है।

यहाँ पॉट रखी हुई है बहुत सुंदर- सुंदर है लेकिन मन कर रहा है जाके इसको तोड़ के आ जाये और यहाँ नीले कलर के भी पॉट रखे हुए है प्लेट भी रखा हुआ है और ताज महल भी रखा हुआ है।